यह एक मंदिर है यहाँ पे बहुत ही लोग घुमने आते हैं एक बाबा है जो लाल कलर का पहने हुए हैं कपड़ा और बहुत ही अच्छा खूबसूरती दिया हुआ है और यहाँ पे पहले अम अंदर घुसते ही चेकिंग स्टार्ट अम रह रहता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा-अच्छा --